नीचे में गमले में कुछ पौधे लगे हुए हैं गमला अलग अलग जगह पे रखा हुआ है।

और यहां पे अलग अलग पोस्टर लगे हुए हैं।

अलग अलग तरीके की गेट ग्रील शटर --

जो की लेटे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

एक बहोत बड़ा पूजा पंडाल का दृश्य है।

नावें पीछे में दिखाई दे रही हैं और एक नाव के ऊपर दो लोग खड़े हैं जो कि अपने गाल के ऊपर हाथ रख के पोज दे रहे हैं।

और यहां पे कुछ लोग हैं जो की बैठे हुए हैं।

और इस दुकान के बाहर में कुछ बलून से सजावट की गई है।

व्हाइट कलर से की हुई है और गेट के ऊपर में कुछ पौधे रखे हुए हैं।

एक फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है जो की फ्लावर लाल कलर का है और यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की कीबोर्ड में कुछ कर रहा है।

और लाइट बल्ब व्हाइट कलर का लगाया हुआ है।

और ये शीशे में पैक्ड है और ऊपर में कुछ कोल्ड ड्रिंक भी दिखाई दे रहे हैं जैसे की रेड बुल लोटो चोको पाई और भी कई तरीके के ट्रॉफी मौजूद है।

और यहां पे ग्रीन कलर का बास्केट के तरह कुछ बना हुआ हैं।

और यहां पे कुछ कुछ सामाने भी दिखाई दे रही हैं जैसे कि टेडी बेयर किचन सेट और भी अन्य सामाने हैं।

और ये कार काफी तरीके से डैमेज हो चुका है।

और यहां पे पीछे में भी कुछ समाने दिखाई दे रही है जोकि बिखरी हुई है।

जिसमें ए_सी लगा हुआ है ऊपर से कुछ फूल लटक रहे हुए हैं।

और यहां पे एक शीशे का डब्बा दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग तरीके की मिठाइयां रखी हुई हैं।

इस दृश्य में गाय दिखाई दे रही है जो--

यह एक घर का दृश्य है यहां पे रेड कलर के दो कुर्सियां रखी हुई हैं और यहां पे पर्दा लगा हुआ है जो कि बैंगनी कलर का है और उसके ऊपर में ए_सी लगा हुआ है नीचे में बैग रखे हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है श्री राजेश्वरी बुक --

और नीचे में कई छोटी और बड़ी पौधे भी है।